बहुत ही फूल एन्जॉय के साथ ये स्विमिंग पूल है वाटरपार्क --

लाइन में लगे हुए है यहाँ गेट पर दोनों भाई है।